रूम में कुछ अलमारियां लगी हुई हैं।

एक औरत हाथ में झोला टांगे हुए--

नीचे की तरफ कच्ची सड़क बनी है।

ये एक गैरेज है जहां पर गाड़ियों के कुछ ना काम होते हुए दिख रहे हैं।

गैरेज में सर्विस की गाड़ी खड़ी हुई है।

लड़के के फेस पर कुछ फेस मास्क जैसा लगा हुआ है और सामने की तरफ --

बने हुए हैं जिसमें पेड़ पौधे लगे हैं।